दुकाने दिखाई दे रही उनके ऊपर बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है कुर्सी दिखाई दे रही है परदे लगे हुए दिखाई दे --

पंखा दिखी रहा है सामन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक कारखाना दिखाई दे रहा है इसमें मशीने लगी हुई--